बहोत सुंदर हैं और इसके पीछे एक बहोत--

देख सकते है यहा पर बहोत ही--

देख सकते है यहां पर--

और इसके साथ में एक व्हाईट कार --

ईंट है यहां पर।

खाली रोड है और--

सेल लगी है आप यहां से--

जहां सब लोग बैठे हैं और --

और शॉप्स के बाहर--

किया गया है और यहां पर बहोत सारी टाइल --

एक जिम है यहां पर--

बहुत सारी मशीन्स रखी गई हैं और--